c ++ में abstract class और pure virtual function के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
*abstract क्लासेस
*pure virtual फंक्शन
* हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu os version 1110
* g ++ compiler version 461
सबसे पहले abstract class के परिचय के साथ शुरू करते हैं
abstract class हमेशा base class होती है
इसमें कम से काम एक pure virtual function होता है
हम abstract class का instance नहीं बना सकते
अब pure virtual function देखते हैं
pure virtual function बिना body का एक function है
यह base class में परिभाषित नहीं होता है
यह इस प्रकार परिभाषित होता है:
virtual void virtualfunname = 0;
derived class को function को override करना ही होगा
नहीं तो compiler एक error देगा
function को कार्यान्वित करना derived class पर निर्भर करता है
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही editor पर code टाइप कर लिया है
मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें हमारा file नेम abstract cpp है
इस उदाहरण में दो numbers का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है
अब पूरे code को समझते हैं
यह iostream हमारी header file है
यहाँ मैं std namespace उपयोग कर रही हूँ
यह abstractinterface named class के लिए घोषणा है
फिर हमारे पास public specifier है
इसमें हमने numbers named virtual function घोषित किया है
यह 0 से इनिशिअलाइज़ होता है
फिर हमारे पास एक nonvirtual function है
और a एवं b दो integer variables हैं
यहाँ हम input function access करते हैं
इसमें हम numbers a और b को स्वीकार करते हैं
यह add named एक डिराइव्ड class है
यह base class abstractinterface की properties को inherits करता है
यहाँ हम function numbers को override करते हैं
इसमें हम दो numbers का एडिशन क्रियान्वित करते हैं
और परिणाम को integer variable sum में संचित करते हैं
फिर हम परिणाम print करते हैं
यहाँ हमारे पास एक अन्य डिराइव्ड class sub है
यह base class abstractinterface को भी inherits करता है
इसमें दोबारा हम function numbers को override करते हैं
और यहाँ हम दो numbers a और b के difference की गणना करते हैं
फिर हम difference print करते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हम class add का एक object obj1 बनाते हैं
फिर हम object obj1 उपयोग करके input और numbers दोनों functions को कॉल करते हैं
फिर हम class sub का एक object obj2 बनाते हैं
फिर से हम object obj2 उपयोग करके दो functions को कॉल करते हैं
और यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबाकर terminal window खोलें
compile करने के लिए:
enter दबाएं
टाइप करें:dot slash abs
enter दबाएं
यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है enter the numbers
मैं 9 और 4 enter करुँगी
output प्रदर्शित होता है sum is 13
हम दोबारा देखते हैं enter the numbers
मैं 8 और 3 enter करुँगी
output प्रदर्शित होता है diff is 5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
अपनी slides पर वायस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा abstract class उदाहरण class abstractinterface
pure virtual function उदाहरण virtual void numbers = 0;
एक नियत कार्य में एक abstract class student बनायें
* प्योर virtual function info बनायें
* function में student का नेम और roll नंबर स्वीकार करें
* दो डिराइव्ड classes marks और sports बनायें
* marks में तीन स्टूडेंट्स के marks स्वीकार करें
* sports में sports में scored किये हुए marks enter करें
* total marks की गणना करें
* फिर एक अन्य डिराइव्ड class result बनायें
* इसमें student का नेम roll नंबर और total marks प्रदर्शित करें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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है:
आई ऐ टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद